गलत है क्योंकि एक-एक करके हि ए_टी_एम के अंदर जाना चाहिए। यहां पर तीन-तीन चार-चार लोग नजर आ रहे हैं।

हो सकता है की प्रोग्राम हो रहा हो।

झूला लगा हुआ है फिसल पट्टी है।

संगीत के प्रोग्राम होई नहीं तो--

हरा भरा दिखत हे पूरा पहाड़ी एरिया हे।